दो लोग हैं इस तस्वीर में जिसमे से दोनों ने टी-शर्ट और जींस पहन रखी हैं साइड में एक टंकी हैं जिसमें सीमेंट भरी रखी हैं।

ये एक तस्वीर है जो कि किसी घर की है जो कि काफी डेकोरेट हुआ हुआ है साइड में एक और घर है जिसमें दो दुकानें हैं।

इस घर के बाहर एक केले का पेड़ है दो आदमी खड़े है जिसमे से एक आदमी ने रेड कलर की शर्ट पहन रखी है और एक ने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है पीछे नरीयल का पैड भी है।

बाहर एक रोड पर काफी सारी गिट्टी पड़ी हुई हैं और थोड़ी सी धूप भी आ रही हैं।

जिसमे काफी सारे लोग है कुछ लोग यहा पर बैठे हुए हैं नीचे जमीन पर और कुछ लोग ऊपर जमीन पे खड़े हुए हैं।

ये एक तस्वीर है जिसमें काफी सारे गाड़ियां पार्क हुई हुई है एक बड़ी सी है बिल्डिंग एक रेड और ग्रीन कलर की पुती हुई है काफी सारी खिड़कियाँ उसमे बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और एक बिजली का खंभा भी लगा हुआ है।

ये एक तस्वीर है जिसमें धागे का काम हो रहा है।

एक तस्वीर है जो कि एक पार्क की है जिसमें काफी सारे पेड़ है एक बड़ा सा काले रंग का हाथी है।

और डार्क ब्लू और रेड कलर का पुता हुआ है एक साइड में एक कमरा है जो की तीन रंगों से पुता हुआ है।

ये तस्वीर एक स्पोर्ट की शॉप है जिसके दरवाजे कांच का बना हुआ है बाहर शटर है जो कि ब्राउन और ब्लैक कलर का है एक बोर्ड लगा हुआ है जो की येलो है।

और यह दरवाजा यहाँ पर काँच का है इसमे एक शटर भी है जो कि ब्राउन कलर का है।

पीछे पेड़ लगे हुए हैऔर इस तालाब में कुछ बेले भी लगी हुई है ऊपर आसमान है जो की पुरा सफ़ेद है।